सी और C में Structuresस्ट्रक्चर्स पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि स्ट्रक्चर क्या है
स्ट्रक्चर को डिक्लेरघोषित करना हम इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे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
जब एक और एक से अधिक वेरिएबल एक ही नाम में समूहित होते हैं उसे स्ट्रक्चर कहते हैं
स्ट्रक्चर का उपयोग भिन्न डेटा को एक ही ऑब्जेक्ट में इकट्ठा करने के लिए किया जाता है
इसे कम्पाउंड data typeकंपाउंड डेटा टाइप कहते हैं
इसका उपयोग संबंधित जानकारी को एक साथ इकट्ठा करने के लिए किया जाता है
अब हम स्ट्रक्चर को घोषित करने के लिए सिंटैक्स देखेंगे
यहाँ कीवर्ड स्ट्रक्ट कंपाइलर को कहता है कि स्ट्रक्चर घोषित हो गया है
strcut name स्ट्रक्चर का नाम है
उदाहरण स्ट्रक्ट एम्प्लॉयी आप कोई भी नाम दे सकते हैं
अब हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर वेरिएबल को कैसे घोषित करें
इसके लिए सिंटैक्स है स्ट्रक्ट struct name एंड struct var struct var struc name प्रकार का एक वेरिएबल है
उदाहरण स्ट्रक्ट एम्प्लॉयी अद्द्र addrएम्प्लॉयी प्रकार का वेरिएबल है
अपने उदाहरण पर जाएँ
मैंने एडिटर में प्रोग्राम पहले से ही टाइप किया है अतः इसे खोलें
ध्यान दें कि हमारा फाइलनेम स्ट्रक्चर c है
इस प्रोग्राम में हम स्ट्रक्चर का उपयोग करके तीन विषयों के अंकों की गणना करेंगे
अब मैं कोड समझाता हूँ
यह हमारी हेडर फाइल है
यहाँ हमने स्टूडेंट के रूप में स्ट्रक्चर घोषित किया है
फिर हमने इंग्लिश मैथ्स और साइंस के रूप में तीन इंटिजर वेरिएबल्स घोषित किये हैं
वेरिएबल्स जो स्ट्रक्चर के तहत परिभाषित किये जाते हैं स्ट्रक्चर के सदस्य कहलाते हैं
यह हमारा मेन फंकशन है
यहाँ हमने एक इंटिजर वेरिएबल टोटल घोषित किया है
अब हमने एक स्ट्रक्चर वेरिएबल स्टड घोषित किया स्टड स्टूडेंट प्रकार का वेरिएबल है इसका उपयोग स्ट्रक्चर सदस्यमेम्बर्स को बदलने और एक्सेस करने के लिए किया जाता है
यहाँ हमने सदस्य में बदलाव किया है
उनको 75 70 और 65 वेल्यू देकर
यहाँ हम तीन विषयों के योग की गणना करते हैं
फिर परिणाम घोषित करें
यह हमारा रिटर्न स्टेटमेंट है
सेव सेव पर क्लिक करें
प्रोग्राम को निष्पादित करें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
कंपाइल करने के लिए टाइप करें जीसीसी स्पेस स्ट्रक्चर c स्पेस हाइफेन ओ स्पेस स्ट्रक्ट और एंटर दबाएँ
निष्पादित करने के लिए टाइप करें struct एंटर दबाएँ
आउटपुट इस तरह प्रदर्शित होता है
टोटल इस 210 अब हम इसी प्रोग्राम को C में निष्पादित करेंगे
अपने प्रोग्राम पर वापस आएँ
मैं समान कोड एडिट करूँगा
पहले कीबोर्ड पर shift Ctrl और एस कीज एक साथ दबाएँ
अब एक्सटेंशन cpp के साथ फाइल सेव करें
और सेव पर क्लिक करें
हेडर फाइल को आईओस्ट्रीम के रूप में बदलें
अब यूजिंग स्टेटमेंट को सम्मिलित करें
और सेव पर क्लिक करें
C में स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन सी के समान है
अतः कुछ भी बदलने की आवश्यकता नहीं है
अंत में हम प्रिंटफ स्टेटमेंट को काउट स्टेटमेंट में बदलेंगे
फॉर्मेट स्पेसिफायर और बैकस्लेस n को डिलीट करें
अब कॉमा डिलीट करें
दो ओपनिंग एंगल ब्रैकेट टाइप करें
यहाँ क्लोजिंग ब्रैकेट डिलीट करें
और दो ओपनिंग एंगल ब्रैकेट टाइप करें
डबल कोट्स में टाइप करें n अब सेव पर क्लिक करें
प्रोग्राम को निष्पादित करें
टर्मिनल पर वापस आएँ
कंपाइल करने के लिए टाइप करें g स्पेस structureसीपीप स्पेस हाइफेन ओ स्पेस स्ट्रक्ट1 यहाँ हमारे पास स्ट्रक्ट1 है क्योंकि हम फाइल स्ट्रक्चर c के लिए आउटपुट पैरामीटर स्ट्रक्ट को ओवरराइट नहीं करना चाहते हैं
अब एंटर दबाएँ
निष्पादित करने के लिए टाइप करें struct1 एंटर दबाएँ
आउटपुट इस प्रकार प्रदर्शित होता है
टोटल इस 210 आप देख सकते हैं कि आउटपुट हमारे सी कोड के समान है
अब अपनी स्लाइड्स पर वापस जाएँ
सक्षेप में इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर के लिए सिंटैक्स उदाहरण स्ट्रक्ट struct name स्ट्रक्चर के सदस्यों को एक्सेस करना
उदाहरण studमैथ्स 75 और स्ट्रक्चर वेरिएबल्स जोड़ना
उदाहरण टोटल studenglish studमैथ्स studसाइंस नियत कार्य के रूप में एक कर्मचारी के रिकॉर्ड को प्रदर्शित करने के लिए एक प्रोग्राम लिखें
जैसे nameनाम addressपता designationपद और salaryवेतन
निम्न लिंक पर उपलब्ध विडियो देखें